यह एक डैम है। यह डैम बहुत ही बड़ा है।

यहाँ पे रोज ताजी मछली लाई जाती है। हम लोग यहां से मछलियां खरीदना पसंद करते हैं।

की तैयारी की जा रही रड बिछाए गए हैं और बहुत सारे --

भाग लिया है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं।

बैंक की शाखा है। जहाँ पे लोग अपना --

जैसे वो बड़े होते है और दुकानो में बेचा जाता है।

वाटर पार्क है यहाँ पे एक स्विमिंग पूल होता है।

बहोत बड़ी-बड़ी है यहां से लोग इन मछलियों को खरीदते हैं यहां पे रोज ताजी मछलियां लाई जाती है।

होता है। यहां पर बहुत सारे लोग इस खेल का मजा लेने आए हुए हैं। आनंद लेने आए हुए हैं।

खेलो के टूर्नामेंट का आयोजन होते रहता हैं जैसे की फुटबॉल खेल का क्रिकेट का --